यहां दो मंजिले बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

और इसके चारों ओर बाउंड्री हुई है।

और मेज के उपर कुछ गिलास और अन्य वस्तु रखी हुई है।

इस दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने काले कलर का कुर्ता पहन रखा है।

और गले में एक ओढ़नी पीले कलर की पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक महिला और एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

और एक बल्ब भी लगा हुआ है।

यहां दो दुकान दिखाई दे रही है।

और यहां कुछ लाइटें लगी हुई हैं।

और एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

और पीछे कुछ क्वाड भी हैं।

जिसके सामने कुछ कार्स खड़ी हुई है।

और दो महिला भी हैं और एक महिला तिरंगा लेकर ख़डी है।

इस तस्वीर में छोटे छोटे पेड़ लाइन से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।